अन्दर यहां पे कुछ आदमी दिख रहे है किताबें दिख रहे है किताबें लकड़ी की रैक मे रखी जो सफेद रंग से पुति है बाहर हमे रात का समय दिख रहा है बोर्ड दिख रहा है।

यहाँ हमें दिन का समय दिखाई दे रहा है| लड़का यहाँ पे काले और नीले रंग के कुर्सी पर बैठा हुआ है पीछे एक और खाली कुर्सी दिख रही है| एक लड़के कि इमेज दिख रही है और सूर्य कि रोशनी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं।

हुड्डी पहनी हुई है एक ने पीले कलर के जैकेट पहना है एक ने सफेद कलर का जैकेट पहना है एक ने नीले कलर का जैकेट पहना है लकड़ी की यहां पे कुर्सी दिखाई दे रही है जो प्लाई की बनी है पीछे हरे रंग की दिवाल दिखाई दे रही है काली सी खींची हुई दिन का समय है।